मिल्की टॉफी और फल से रखे हुए हैं। काले अंगूर हैं।

बहुत फूल लगे हुए हैं और उसमें पत्ते पड़े हुए हैं।

और यहाँ पर बहोत से व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति उनके पास बैठा हुआ है।

और यहाँ पर बहुत मरीज खड़े हुए हैं। एक मोटर साइकिल खड़ी हुई है। उसके ऊपर लिखा हुआ है। आर.टी.आर --

यहाँ पर गाड़ियों के फोटो दिखाई दे दी --

वहाँ पर बस खड़ी हुई है और एक व्यक्ति खड़ा है बैग लिए हुए। उसकी टीशर्ट शर्ट का रंग नीला है। उसके बाल काले हैं।

उसका उसका सेंटर का नाम है। एम.बी.आर.एफ फेस --